बिल्डिंग के दरवाजे खिड़कियां और वेंटीलेटर भी है।

बैठने के लिए कुर्सियां भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा रोड भी है।

तस्वीरें भी चिपकाया हुआ है ऊपर में ट्यूब लाइट्स भी हैं।

सामने वाला आदमी ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

स्वीट्स लॉलीपॉप किंडर जॉय भी रखा हुआ है।

सामने में बड़े बड़े गच्छे भी है।

एक गाड़ी भी है जिसका पीछे का दरवाजा खुला हुआ है सामने में तीन आदमी खड़ा है।

दुकान के अंदर तरह तरह के सामान रखे हुए हैं।

पीछे में व्हाइट और ब्लू कलर का कारपेट भी बिछाया हुआ है।

इनमें से एक ने संता का कस्टूम भी पहना है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे मनुष्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा हैं।

टेबल में जूस और आइसक्रीम भी रखा हुआ है।

दीवारों में कुछ तस्वीरें भी चपकाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा खाली कमरा दिखाई दे रहा--

गैरेज की छत में टीना लगाया हुआ है।

बिल्डिंग को बहुत सारा डिस्को लाइट्स और एल_ई_डी लाइट से सजाया गया है।

दुकान के अंदर कई सारे सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मिस्त्री भी हैं।

मुझे इस तस्वीर में ढेर सारा कपड़ा का दुकान दिखाई दे रहा हैं।

सामने में छोटा सा फूल का पौधा भी है।

थोड़ा सा ऊपर में एंडोस्कोपी डन हेयर भी लिखा हुआ है।

सामने में पेड़ पौधे भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नया खुला हुआ शॉप दिख रहा है।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

इस कमरा को पूरा साफ सुथरा रखा हुआ है।